अनेक कापी किताबे रखी हुई नजर आ रही है।

जहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं।

शॉपिंग कोम्प्लेक्स की बिल्डिंग को शीशे से बना रखा है और बिल्डिंग के बाहर --

मोबाइल शॉप और यह ओप्पो कंपनी के मोबाइल सेल करती है।

आई हुई है और कर्मचारी सर्विस करते नजर आ रहे हैं।

अंगूर उसमें हरे अंगूर काले अंगूर आ अनार सेब संतरा आदि।